व्हाइट कलर के बैलून पड़े हुए है वहां पर एक बैठकर कई बड़ा सा बैलून और बाहर एक अ अ फूल वाला --

एक बड़ा सा हॉल है जहां पर दो कंप्यूटर चला रहे और उस हॉल में एक ए_सी भी लगा हुआ--

दुकान में एक व्हील चेयर जिसके अंदर कोल्डड्रिंक की--

कार्ड्स वगैरह रखे हुए लक्कड़ की अलमारी है बड़ी सारी और नीचे बहुत सारे कार्ड्स रखे हुए हैं जो

और साइड में गाड़ियां आ रही हैं जा रही हैं।

और यहां पर कुछ एक रैक भी बना हुआ है ऊपर एक बोर्ड लगा हुआ है जिस पर--

इसमें एक पाइप डाल रखी है जिस ट्राने--

ये ये सामान रखा हुआ है जहां पर चार्ट रखे हुए हैं मंगाए रखे हुए व्हाइट क्रीम मंगाए रखी गई है।

गाड़ियां खड़ी हुई हैं यहां पर बहुत सी कारें ट्रैक्टर ।

एक कारे भी खड़ी है जिसमें से दोनों ब्लैक कलर की है और एक कार बहोत सही करो साइड मे--

अह शॉप के बाहर कुछ घर भी बने हुए और शॉप के बाहर कुछ--